पार्क है। जहां पर बहोत बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं। जोकि दिखने में बहोत ही सुंदर हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक ग्राउंड है जो की बहुत ही हरा भरा है इसके आस पास बहोत बड़े बड़े पेड़--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक रोड है इसके आस पास--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि या एक करियाना स्टोर है।

जो कि इसकी सुंदरता को और बड़ा रही हैं और इसके आस पास दो चार बगीचे हैं जो कि इसके सुंदरता को बहुत ही आकर्षक बना रही हैं।

और ऊपर आसमान बादल से छाया हुआ है इसके आस पास बहुत सारे घर हैं जोकि बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं।

अंदर बहुत सारे लोग हैं जो की गाना बजा रहे हैं और खाना पीना खा रहे--

पांच बाइके खड़ी हैं और तीन चार लोग बाहर खड़े हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि--

इसके सामने बहोत सारे गमले रखे हुए है इसके आस पास बहुत सारे सुंदर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।